अगल बगल मे बोहोत सारे खिड़की वगेरा दिखाई दे रही है जहाँ से रोशनी अंदर आती हुई देखी जा सकती है ऊपर कुछ कराकट वगेरा लगाए गए है जिसमें बोहोत सारी पाइपें लगी है।

ब्रिज को पिंक कलर से पेंट किया गया है अगल बगल मे बोहोत सारे पेड़ देखे जा सकते है।

नीचे धरती देखी जा सकती है जिसपे कुछ जगह पर हरी-हरी घासे उगी हुई है अगल बगल मे कुछ बड़े-बड़े बैरिकेट जैसे देखे जा सकते है पीछे कुछ मूर्तिया जैसी--

नीचे कुछ बड़ा सा एक पत्थर जैसा देखा जा सकता है टाइल्स है बिछा हुआ जा सकता है जिसके कुछ ऊपर ब्लू कलर के कार्पेट बिछाया गया है।

इससे अंदर की ओर जाया जा सकता है ऊपर कुछ रेलिंग जैसा देखा जा सकता है अंदर एक घर जैसा झोपड़ी जैसा कुछ देखा जा सकता है।

बाउंड्री जैसे दिया जा सकता है अगल बगल कुछ धरती देखी जा सकती है नीचे एक लंबी सी पतली सी रोड देखी जा सकती है बगल में कुछ मिट्टी जेसी देखी जा सकती है आगे कुछ रोड जैसे देखे जा--

सफेद कलर का दिखाईं दे रहा है उसमे कुछ कुर्सी जो है ऊपर कुछ लाइट जलती हुई नजर आ रही है।

पीछे हरे हरे पौधे पेड़ पे जैसे देखे जा सकते है घना जंगल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है पीले कलर का बड़ा इंटरेस्ट जैसा कुछ बनाया गया है जो काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।